यह तस्वीर एक पर्दाया की दुकान की स इसमें बहुत घने पर्दे टंग रहे स।

यह दुकान बहोत बड़ी और साफ सुथरी

थोड़ा बहोत पानी भी एक जगह पे भरेया हुआ से--

और यहां पे एक बहुत बड़ा बोर्ड भी लगा हुआ से।

इसके पास कुछ औरतें और आदमी भी खड़े हुए--

यह तस्वीर एक बहोत बड़े हैं।

यह तस्वीर बहुत वडे ट्रैक्टर की से यहां पे क्रेन भी खड़ी हुई से।

इसका दरवाजा बहोत ही बड़ा है।